यख मा जी कई सारा कागज की विचित्र तस्वीर छिन बणाई।

यख मा जी अलग अलग कामों पर अलग अलग प्रकार का कंप्यूटर छन रख्यां यख मा जी कई सारी किताब छिन रखीं कई सारी फाइल छिन रखीं कई सारा पन्ना चीन दिखेण लग्यां मोबाइल छ रख्युं।

यख मा जी टेप भी च दिखेणु लग्युं ट्यूबलाइट छन दीवालों पर लगीं यख मा कुछ लोग भी छिन।

यख मा जी कुछ विचित्र चीजें छ डालीं यख मा चम्मच भी रख्यां दिखेण मा ये बहोत स्वादिष्ट दिखेण लगण लगीं आइस क्रीम हम गर्मियों मा खाँदा छो।

यख मा जी कुछ कई सारा मकान छन यख मा जी एक मकान अभी जु छा बण छ लग्यूं यख मा जी बिजली का तारन दिखेण लग्यां।